जो सफेद रंग की परदे लगे हुए है और पिली हुई कुर्सी है और सामने एक छोटा सा टेंट लगा हुआ--

लाल रंग की कुर्सी है अगल बगल बहुत सारी बुक रखी गयी है सामने एक साईड में एक बुक रखी गयी है और जो कार्टून रखा हुवा है उसके ऊपर पेन अटकी हुयी है।

और इस पर सामने बड़ासा एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो नीले रंग का है उसके बगल में सीढ़ी लगी है जो लोहे की सीढ़ी है सामने एक आदमी जा रहा है जो पिंक कलर का शर्ट पहने हुए है और सर पे पगड़ी ल--

जो पीले रंग की है और अगल बगल बहुत सारे लाईट लगी हुई है जो सफ़ेद रंग की लाईट है ऊपर एक छत्री लगी हुई है जो टिने सफ़ेद रंग की है।

चतरा का है जो हरे रंग की हैअगल बगल बहुत सारी बोरी रखे हुई है जो बाकी रंग की है कुछ लोग हेलमेट पहने है सफ़ेद रंग की और पीले रंग की--

जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है हाथ मे बुक लिए हुए है और पीछे एक साइड पे बड़ा सा दरवाजा है।

एक बडा सा गेट है जो चैनल गेट है भूरे रंग का अगल बगल पेड़ पौधे रखे गए है जो है हरे रंग की पत्तियां है सामने बोहोत सारे लड़के बैठे हुए हैं और मास्क लगाए हुए हैं और सामने पेपर है बड़ा सा।

और ये बेंच में कलर्स रखे गए है और फेविक्विक और कुछ पुट्ठे रखे गए है सभी लडकिये चित्र बना रही है और कुछ ने मास्क पहना हुआ है और कुछ ने मास्क नही पहना हुआ है।